निला आसमान आसपास हरे भरे पेड --

एक एक बडा ख्म्बा दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ हरियाली नज़र आ रही पीछे की तरफ भी बहुत सारी खिडकिया दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक एस्ट्रल पाइप्स दिख रहा है साइड में भी कोई दुकान दिख रही हे बाहर एक गाडी रखी --

नजर आ रहे है जिस पे सामान रख कर जाता है साइड में छोटे छोटे से पौधे रखे हुए है बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

इस चित्र मे पेड दिख रहे है सामने कि तरफ नाव खड़ी दिखाई दे रही है।

इस तरफ पानी बहता नज़र आ रहा है सामने कि तरफ एक मशीन दिखाई दे रही है।